अच्छा भी दिखाई दे रहा है।

रास्ता भीं दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक किताब का दुकान दिख रहा है।

बहुत सारा पेड़ सब भी है।

सामने में एक बहुत बड़ा क्रॉस दिखाई दे रहा है।

जिसमें बहुत सारे चिप्स रखे हुए हैं और पानी बोतल जूस भी।

इसमें बहोत सारे टेबल है।

बहुत सारे पेड़ भी है।

सी सी टी वी कैमरा भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में घर दिख रहा है।

इस तस्वीर में कनिष्क ट्रेडर्स लिखकर दिखाई दे रहा है।

और एक छोटा सा प्लेट भी है जिसके ऊपर कप और स्पून भी रखा हुआ है।

जिसमें एक स्कूटी पार्क करके रखा हुआ है।

और बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ भी--

बिल्डिंग के बाहर बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक रूम दिख रहा है।